यहां पर फोर व्हीलर पार्किंग एरिया दिखाई दे रहा है जिसमे काफी सारे ऑटो और काफी सारे फॉर व्हीलर पार्क दिखाई दे रही हैं इसके पीछे काफी सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं दिखाई दे रहे है और बगल मे एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही हैं।

ऊपर एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है इस स्विमिंग पुल काफी बड़ा दिखाया दे रहा है और इस स्विमिंग पुल मे काफी पानी भी भरा हुआ हैये स्विमिंग पुल पर काफी सारे लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ये स्विमिंग पुल के चारो साइड ---

यहां पर एक बिल्डिंग का अंदरुनी हिस्सा दिखाई दे रहा है जो की येलो और ब्राउन कलर से पुता हुआ है इस बिल हिस्से के अंदर रेड कलर की चेयर और लकड़ियों की कुछ कुर्सी और टेबल --

यहा पर एक सिनेमा हॉल दिखाई दे रहा है जो की सिनेप्लेक्स है इस सिनेमा हॉल का रंग ब्लू और येलो है इसके बाहर बुक माय शो का नेम दिया हुआ है।